और उधर खड़े होकर कुछ लोग खरीद रहे हैं उधर मकान बना हुआ है।

टीन छाई हुई है पिलर है और पेंड लगे हुए हैं बहुत सारे और एक बिल्डिंग बनी है एक दो तीन चार--

हैलो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो एक पड़ा हुआ है टेबल --

ये खाने के लिए राइस रखा हुआ है और बिरयानी भी रखी हुई है।

और यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर कुर्सी पड़ी हुई है चार--

और यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर पेड़ लगे हुए हैं और बिल्डिंग बनी हुई है जो--

और उसके चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे --

और इधर भी कुछ मकान बने हुए हैं सामने देख पा रहे हैं एक टावर और लगा हुआ है दो--

एक लोग खड़ा हुआ है काउंटर पे दो लोग इधर खड़े हुए हैं हाथ बंद है। एक लोग हाथ में कुछ लिए हुए हैं।

यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यह एक जिम सेंटर है यहां पर एक--

इधर फोटो भी लगे हुए हैं और उधर लिखा हुआ है फिटनेस मूवर्स --

और यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यहां फील्ड पड़ी हुई है फील्ड के--

जिसके अंदर बीच में एक बना हुआ है गोलाकार का चक्र--

यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यहां लोग छठ पूजा मना रहे हैं।

और कुछ लोग नहा के आ रहे हैं।

यहां पर हमें दिख रहा है एक पेट्रोल पंप और यहां पर एक कार खड़ी हुई है।

यहां पर हमें दिख रहा है एक बड़ा सा मकान बन रहा है।

और यहां पर कागज भी रखा हुआ है बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं।

और इधर एक वाइट शर्ट पहने हुए हैं और एक हरा शर्ट पहने हुए हैं। बैग टंगा हुआ है। बाइक पर बैठा हुआ है।